नहर के दोनों साइड पौधे उगे हुए है।

जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हैं।

नदी के बीच मे के पाइप लगाए गए हैं |

इस फोटो में हमें एक जंक्शन दिखाई दे रहा है।